हरा-हरा घास है । हर-हर घास भी है ।

चस्मा भी रखा है अच्छा बड़ा वाला फूल है।

दीवार है कितना बड़ा है यहाँ पे --

कितना अच्छा है क्रिकेट खेलने का मतलब फुटबॉल खेलने --

मूर्तियां कितना अच्छा अच्छा दिख रहा है।

तो यहां सब्जी रोपा जाता है यहां पे।

अच्छा है डिज़ाइन से बनाया हुआ है।

डिज़ाइन का बना हुआ है कुआँ ठो।

अच्छा सजाया हुआ है।

ये ऊंचा दिख रहा है।

ऐसा दिल बना हुआ है चॉकलेट बहुत सारा पैक किया है।